यह एक एरोप्लेन हैं।

यह टाटा मोटर्स सर्विस है--

यह मेरे कान्हा जी का बीमान है।

मैं यहां देख पा रही हूं।

बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं।